यहा पर एक अ बहुत बड़ा ऑफिस है की टाइप यहा पे बाइकें भी खड़ी है बहुत सारी पेड़ भी एक बहुत बड़ा लगा हुआ जिस में रेड कलर का और वाईट कलर का पेंट पुता हुआ है पेड़ में।

यहाँ पर कार की सर्विसिंग हो रही है जिसका पहिया खुला हुआ है दोनो और दो मैकेनिक यहां पर खड़े हुए हैं जिन्होनें नीले रंग की कपडे पहने हुए हैंऔर पिचे भी एक बालेक कलर की कर खड़ी हुई है।

यहा पर बहुत से लोग बच्चे यहा पर खड़े हुए है अ जो कि अ गेम्स वगैरा खेल रहे है जिन्होंने स्कुल ड्रेस पहनी हुई है किसी ने घर के कपडे पहने हुए हैं।

और एक पेड़ के बगल में एक घर भी दिख रहा है जिस में विंडो दिख रही है दो और यहा पर नीचे ग्रास भी दिख रही है घास वगेरा भी बहोत सारी लग रही है यहा पर--

यहाँ पर कुछ आ चल रहा हैं यहाँ पे बहुत से लोग आ राउंड बना के बैठे हुए हैं।

पानी में पैर डालके जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है वे एक पत्थर पे बैठा हुआ है और सामने एक बहुत बड़ा पर्वत टाइप का लग रहा है जो के देखने में अच्छा लग रह है ऊपर आसमान भी दिख रहा है यहां पर ऊपर बादल है उसमे --

वाइट कलर की उसकी रेलिंग पेंट की गयी है और सामने दो पेड़ भि दिख रहे है और बाउंड्री भी यह पे है जिसे पे तार फेंसिंग हो रही है और यहा पे थोडा सा रोड भी दिख रहा है।